यहा बच्चे दो लड़के है जहां बैलून्स लगे हुए है।

ये एक हॉस्पिटल है जहां पर नर्से हैं डॉक्टर हैं परदे लगे हुए हैं पर बेड लगे हुए हैं।

ये एक मछली मार्केट है जहां पे लेडिस मछली खरीद रही है आप भी लोग भी है।

आदमी खड़े हैं यहां पर दो-तीन कैरेट है मछली पकड़ रही है यहां पर आदमी लोग झिल में।

यहां शादी का प्रोग्राम चल रहा है जहां पे कुर्सी लगी हुई है टेबल लगी है हाल सजा हुआ है

मछली बीक रही है यहां पे एक आदमी टोपी पहन के खड़ा है बात करते हुए केकड़ा रखे है मछली रखी हुई है। यह डिश है

यहां शादी की रस्में चल रही है जहां पर दो स्टील की थाल रखे हुए है पंडित जी है वर वधू है।

दो महिला बात कर रही है तीन महिलाएं खड़ी हैपंडित जी भी हैं फूल लगे हुए हैं यहां पर सामग्री रखी हुई है।